सामने एक बोर्ड है जिसके ऊपर लिखा हुआ है द हिंदुस्तान कॉन्सेप्ट इंग्लिश --

के अंदर एक लड़की जाती हुई दिखाई दे रही है।

जहां पे काफी सारे टूटे फूटे छोटे छोटे से दरवाजे हैं इसके अंदर एक आदमी खड़ा है।

खड़ रखा हुआ है एक आदमी दिख रहा है जो एक--

मुझे यहां पे एक गुफा दिखाई दे रहा है पत्थर का--

मुझे यहां पे पिंक कलर का एक विद्यालय दिखाई दे रहा है।

जिस्म इस्म काफी छोटे छोटे पौधे हैं।

बाइक पे एक आदमी है साइड में एक घर दिखाई दे रहा है एक डी_जे दिखाई दे रहा है।

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे खुला आसमान दिखाई दे रहा है।

आइ_सी_आइ_सी बैंक दिखाई दे रहा है होटल के सामने एक पेड़ है पे इस होटल के सामने एक पेड़ है रास्ता है होटल के अंदर एक आदमी दिखाई दे रहा है।

मुझे यहाँ पे एक गार्डन दिखाई दे रहा है गार्डन के अंदर टेबल है चेयर है टेबल के ऊपर फाइल जग रखी हुई है।

फूल दिखाई दे रहे हैं काफी सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं गार्डन के अंदर एक आदमी खड़ा है।

मुझे यहां पे एक दुकान दिखाई दे रहा है दुकान के अंदर काफी सारे सामानें रखी हुई है।

आटा का थैला दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पे खुला आसमान काफी सारे पहाड़े दिख रहा है पेड़ पौधे दिखाई दे रहा है।

ब्लू कलर का डब्बा दिखाई दे रहा है गेट के पास बाइक पे दो आदमी बैठा हुआ है।

सारे पेड़ है पौधे दिखाई दे रहा है।

लाइटिंग दिखाई दे रे एक आदमी खड़ा हुआ है।

मुझे यहां पे एक रिसेप्शन हॉल दिखाई दे रहा है जहां पे छे सात चेयर है टेबल है।

टेबल के ऊपर फाइल पानी बोतल लैपटॉप रखा हुआ है और दो आदमी बैठे हुए हैं एक आदमी खड़ा है।